इसमें सफेद बादल दिखाई दे रहें हैं रोड दिखाई दे रहा है। बीच में सफेद पट्टी बनी हुई है।

कुछ लकड़ी खंभे गड़े हुए है आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बाउंड्री बनी है इसमें ब्लैक मैरून कलर की पट्टियाँ लगी हुई हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

वह है बाहर एक बस खड़ी हुई है जिसका कलर येलो है स्कूल के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे वाइट कलर से लिखा हुआ है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है इसके सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है ट्रक का कलर रेड है पेट्रोल पंप का कलर अं येल्लो एवं व्हाइट दिखाई दे रहा है सामने लाइट जल रही है।

यहाँ पर बसें दिखाई दे रही है जिनका कलर येलो है नीचे ग्रीन कलर की घास दिखाई दे रही --